बोनट भी उठा कर इसमे कुछ काम कर रहा है और पीछे के तरफ भी एक कार खड़ा दिखाई दे रहा।

इस चित्र मे हमको एक दुकान का ऍडव्हरटाइसमेन्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर मे मकेश दुग्धालया यहाँ का रहा है यहाँ पे कॉन्टॅक्ट नंबर भी है ऊपर की तरफ शीट भी दिखाई दे रहा है और साइड मे हमको एक ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है।

इस चित्र मे हम दो फूलों को लटकाया हुआ देख सकते है। हार फूलों का माल और नीचे की तरफ हम--

इस चित्र मे हम एक प्लेन देख सकते है ये प्राइवेट प्लेन जैसी दिखती जिसके ऊपर वी_टी -आर_आर _एम करके लिखा हुआ है।

इस चीत्र मे हम उप्पर की तरफ आसमान को देख सकते है। नीचे की तरफ अ हम घास फूस को देख सकते है। वह सब जल गवाह यहाँ पर मट्टी पत्थर भी दिखाई दे रहा और यहाँ पर हम--

इसको जी.एस.पी. फिश करके भी बुलाया जा रहा है और इसका एड्रैस भी यहा पर बता रहा है ये दुकान जैसा है इसको यहा पर काँच का दुकान भी बताही दे रहा।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान को देख को सकते है। जिसका रंग आसमानी है और यहाँ पर हम बिजली के ताम को भी देख सकते है और पर हम रास्ते को भी देख सकते है। एक बीड़ी सिरी से यह इमारत जैसा बनाया गया है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान को देख सकते है यहाँ पर कए लोग जा रहे आ रहे देख सकते यहाँ पर एक बड़ी इमारत जैसा दिखाई दे रहा है।

और हम बीच मे हम एक पेड़ भी देख सकते है। पीछे की तरफ हम बिजली की तार भी देख सकते है और यहाँ पर बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। जिसको नेट से बनाया गया है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान को देख सकते है बीच मे हम खेती का हम गा थोड़ा बहुत घास पुस को देख सकते है।

इस चित्र मे हम एक गेट देख सकते है। जिसका ऊपर रॉयल पाम करके लिखा है। यहाँ पर इवेंट्स एण्ड बांकुएट्स हॉल ये सभी ऐड्वर्टाइज़्मन्ट दे रखा है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान देख सकते है नीचे की तरफ हम घास फूस देख सकते है और हम यहा पर --

इस चित्र मे ऊपर की तरफ आसमान देख सकते है। नीचे की तरफ हम अनेक तरह के पेड़ों पौधे को उगता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक पानि बहता हुआ नज़र आ रहा है।

यहाँ पर नारियल का भी पेड़ लगाया हुआ है। और वो अच्छे से उग रहा है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान देख सकते नीचे की तरफ हम रास्ता देख सकते है यहा पर एक पाँच छह से गाड़िया भी खड़े हो गयी है शायद एक फैक्ट्री जैसा लग रहा--

यहाँ पर वो गेम खेलने के लिए ट्रैकिंग करता था इसलिए जा रहा नज़र आ रहा है। यहाँ पर झाड़ो के बीच वो जारा--

पेड़ों को भी उगते हुए नजर आ रहा है और यहा पर वो झाड़ों ग्रास जैसा नजर आ रहा है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान भी देख सकते है नीचे की तरफ हम झाड़ों को देख सकते है वोह बड़े-बड़े झाड़ी स नज़र आ रहा है।

चित्र मे हमको गॅरेज दिखाई दे रहा है यहा पे दि कोल वोर्कशॉप करके बताई दे रहा है यहा पे कैस्ट्रॉल का भी ऍड दिखाई दे रहा है।

पुजा का सामान भी देख सक--